एस.टी.डी. है लेबर है जो काम करने में व्यस्त है।

और यहाँ पे कुछ सामान हैं जो उसपे रखा हुआ है चोकलेट है डेरी मिल्क और बिस्किट है।

और ग्रीन कलर का पेंट करा हुआ और गेट है।

तो बच्चे लोग उ नीचे से बहुत देखने की कोशिश करतें हैं पर दिखते नही कुछ दिखते हैं और कुछ नही दिखते।

बहोत तार हैं और यहाँ पे आसमान जो दिख रहा सो अंधेरा-अंधेरा भी है।

अरे यहाँ पे बोहोत सारा हम्म घर भी है।

यह एक पढ़ने का जगह जहाँ कोचिंग है पोस्टर पे है और पोस्टर भी बहुत सारा है एक कोचिंग है जहाँ देखिए और सब पढ़ने के लिए आयें हैं जो साइकिल से आयें हैं|

यहां बैठ कर कुछ हाथ से लेकर टायर में कुछ करे ला लगता है कुछ टायरे में कुछ प्रोब्लम --